बड़ा ही सुंदर और लाजवाब एक मशीन है जिसे सभी लोग देख रहे हैं | एक लोग रिसर्च कर रहे हैं एक व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी है।

तीन आदमी खड़े तीनों आदमी हाथ मिला रहे हैं तीनों दोस्त हैं दो का शर्ट है एक का शर्ट एक पता नहीं क्या पहने हुआ है लेकिन एक टी-शर्ट पहने हुआ है।

अपनी सेल्फी ले रहा है जिसका शर्ट का रंग लाल है। उसकी शर्ट का डिज़ाइन काफी सुन्दर है और शर्ट के कलर का टोपी है एक पहना हुआ टोपी ब्लू है उसके ऊपर में एक पंख लगा हुआ है।

वस्त्र धारण किये हुए हैं और उसके साइड में एक लेडीज मुर्तियां हैं।

एक महिला काला कलर की पहनी हुए है एक साड़ी पहनी हुई है एक माहिला जो है स्वेटर पहनी हुई है लाल कलर की स्वेटर है एक की हाथ में मोबाइल है।

दो लेबर छत का खुदाई कर रहे हैं लेकिन छत थोड़ा टुटा है और उसके हाथ में हथौड़ा है।

वह लाल कलर की सारी पहनी हुई है। ब्लू सोने का हार पहनी हुई है। उसके पीछे तबला है।